यहा एगो बडो दरवाजा बनलबा उपअ एक बड़ो गेट लगल बा।

फूलों लगल बा आ आस-पास दीवाल बा।

पेट्रोल पम्प के आस-पास रैलिंग लगत बा पेट्रोल पम्प के आस-पास छोट-छोट पेद बा पौधा बा ।

उमे लाइट लागत वा सितारे लटकत बा।

मंदिर के पीछे पेड़ो बा छोट पौधा बा घास उगल बा मंदिर के पास मे दीवालों बा --

आगे रोडो बा एगो गोल चबूतरा छोट चबूतरा बनल बा उमे झण्डा बा।

छोट-छोट घास उगल बा कचरा पड़ल बा।

छोट-छोट मुन्ना-मुन्नी बा औरत बा आदमी बा।

पीछे पेड़ो बा एक ओर बिल्डिंग बा नीचे --

एगो दुकानो बा दुकान में सामान रखल बा।

एगो बोर्ड रखल बा हॉल में कुर्सी रखल बा।

बिल्डिंग के नीचे कछु लोग खड़ल बा बिल्डिंग के नीचे एगो बाउंड्री बा।

लड़का के पीछे एगो कमरा बा ओय मे दू पंखा लगल बा कांचों लगल बा।

यहां मंदिर बा मंदिर के आस-पास औरों मंदिर बा एगो तालाब बा।

यह एगो बिल्डिंग बा बिल्डिंग के आगे --

आस-पास बड़ल बड़ल पेड़ बा।

जीना बा आगे मैदानो बा मैदानो मे छोट-छोट घास --

पीछे एगो बड़ो पोस्टर लगल बा आस-पास पेड़ बा छोटे-छोटे पोधा बा छोट-छोट टंकी रख --

कछु पेड़ों बा लाइटो जलत बा गाड़ी बा।

यह एगो मछली बाजार बा एगो टेबल बा उपे मछली बा कीड़ा बा इल्ला बा।

कुछ गमला जमीन पर रखत बा कांचो के खिड़की बा उमे गमला रखत बा फूल बा |

कांच की खिड़की लगल बा ऊपर लाइटो लगल बा।